गौतम भगवान की यह मूर्ति बहोत पुरानी दिखाई दे रही है। नीचे और किसी की भी मूर्ति है जो बुद्ध भगवान की प्रतीत होती है।

प्रस्तुत चित्रा में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है | मंदिर की ध्वजा ऊचीं दिखाई दे रही है | मंदिर के बाजु- बाजु हमें--

प्रस्तुत चित्र मे हमें जैन मंदिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। जैन मंदिर में जैन लोग आते हैं । यह मंदिर हमें सफ़ेद कलर का प्रतीत होता है।